इस चित्र में बहोत सी जमीन दिख रही है हरी घास दिख रही है हरे पेड़ दिख रहे हैं सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है मिट्टी की जमीन नजर आ रही है हरा पेड़ नजर आ रहा है।